खड़े हुए और कुछ औरत दिखाई दे रही है।

गले में माले बड़े-बड़े दिखाई दे रहे हैं।

फल फुल केले सेब अमरूद--

पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ा सा मशीन दिखाई दे रहा है।

ऊपर में एक पीला रंग का डब्बा और एक बैनर में गौरव लिखा हुआ है।

चार पीलर दिखाई दे रहा है और कचरे का डब्बा दिखाई दे रहा है दो।

ठीक बगल में एक बड़ा सा टेबल और चारों तरफ चियर दिखाई दे रहा है।

पीला सफेद और लाल दिखाई दे रहा है।

एक और एक साइकिल दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर एक लैपटॉप और कुछ पेपर दिखाई दे रहे और--

बहुत सारा कॉपी किताब दिखाई दे रहा है ठीक बगल में एक बड़ा सा रैक में कुछ कॉपी किताब और पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

फूल दिखाई दे रहा है जो टोकरी के अंदर है।

शर्ट पेंट पहना हुआ है और ठीक बगल में एक बच्चा गाड़ी पर बैठा हुआ है और कुछ अगल-बगल में आदमी दिखाई दे रहे हैं।

ठीक बगल में दो आदमी का पैर दिखाई दे रहा है एक जो चप्पल पहना हुआ है जो नीले रंग का दिखाई दे--

यह पंडाल है अंदर में सरस्वती माता का मूर्ति बैठाया गया है।

कुछ आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी जो चद्दर लिया है।

यहां पर बहुत पुराना पुराना--

झरना नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है।

और नीचे में कुछ लाइट भी जलती हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ पौधा और घास दिखाई दे--

शामने में एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा।

यहां पर एक आदमी जो खड़ा है जो--

जिशका नाम वैष्णव ढाबा लिखा हुआ है।

टेवल और बहुत सारा बड़े टेवल भी दिखाई दे रहा।

ठीक बाहर में बच्चों का झूलने के लिए--

बनाया गया है और दो कमला दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बच्चा जो कुर्ता और गले में पीले दुपट्टा पहने खड़ा है।

यह एक कपड़ा का दुकान है यहां पर बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे जींस सजाकर--

और कुछ डब्बा भी दिखाई दे रहा है और एक नीचे में कांच का डब्बा में--

यहां पर दो आदमी बैठकर--

नीचे में कुछ बड़ा सा कट्रेन और कुछ --

नीला हरा और सफेद दिखाई दे रहा है।

और दूर दूर में बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे--

यहां पर कुछ छोटे-छोटे पर--

बैग और कुछ बच्चों का बैग भी दिखाई दे रहा है।

टेबल पर बैठा हुआ जो शफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ--

ठीक बगल में एक बड़ा सा काला रंग का बैग दिखाई दे रहा है।

और एक बच्चा जो गोद में छोटे से बच्चा लिया है और--

तीन जो साड़ी पहनकर खड़ी है।

जो लाल और सफेद रंग का है और--

बगल-बगल में दो-तीन पेड़ दिखाई दे रहे हैं और शफेद रंग का--

तीन-चार खिड़की भी दिखाई दे रहा है ऊपर में शफेद रंग का कट्रेन लगा दिखाई दे रहा है और कुछ सीढ़ी दिखाई दे रहा है शामने में।

यहां पर बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक पीले रंग का प्लास्टिक के ऊपर में कुछ लोहे का शमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बड़े से टेबल के ऊपर में--

कुछ बर्तन और कुछ चम्मच--

यह एक घर दिखाई दे रहा है जो शफेद और नीले रंग का है।

और एक कट्रेन का घर दिखाई दे रहा है जो शफेद रंग का है।

ठीक बाहर में एक पोस्टर में लिखा हुआ।

गाड़ी और कुछ स्कूटी भी दिखाई दे रहे हैं एक शफेद रंग का गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

पेड़ और कुछ छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

साड़ी पहनी हुई दिखाई दे रही है जो शफेद रंग का है और शफेद रंग का--

खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं और ऊपर में कुछ स्टार और कुछ रिवर से सजाया गया दिखाई दे रहा है।

यहा पर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है ऊपर में एक खिड़की दिखाई दे रहा है।

गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर में एक छोटा सा मौका दिखाई दे रहा है जो काले रंग का है।

ठीक बगल में कुछ घर दिखाई दे रहे जो ईटा का बना हुआ है।

और एक पोस्टर दिखाई दे रहा है जिस पे--

खिड़की जो कांच का दिखाई दे रहा है और--

कुछ आदमी जो रोड के किनारे खड़ा है और एक आदमी अखबार पढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान है ऊपर में लिखा हुआ है।

साइड में कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

ये एक रोड के बगल में एक घर दिखाई दे रहा है।

ठीक बगल में एक पेड़ दिखाई दे रहा है और एक लंबा सा तार दिखाई दे रहा है।

घर के नीचे कुछ बालू दिखाई दे रहे हैं।

रास्ता के सामने एक दुकान दिखाई दे रहा है।